इसमें बाहर कुर्सियां लगी हुईं हैं।

उन पर एक व्यक्ति बैठा हुआ दिख रहा है।

बहोत छोटे-छोटे इंसान --

ये तस्वीर बहुत बड़ी बिल्डिंग की--

ये बिल्डिंग पीले हल्के सफेद रंग की है।

इसमें बहोत सारी हरी घास और हरे पेड़ नजर आ रहे हैं।

इसके पीछे ट्रक भी खड़ा हुआ है।

यहां एक आदमी बाइक से जा--

ये तस्वीर एक पारक की है।

ये तस्वीर एक सड़क की है।

यहां एक कार और बाईकें खड़ी हुई है यहां खादि का बोड --